और यहां पे खुली में उनके सब कुछ पड़ा हुआ है जिसके कारण हमें दिख रहा है कि वो खाने की द्वा खाने की--

वो ठीक कर रहा है और देखा है हमको चेकअप कर रहा है कि कैसे हैं वो कैसे नहीं--

इस इमेज मे दिख रहा है कि शक के ऊपर या घर के किसी ऊपर घर के ऊपर नहीं काफी--